जिसके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है।

पर कुछ झूले लगे हुए हैं।

तरह के कपड़े रखे हुए है।

और उसी के पास एक लड़का--

और कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

साड़ी पहनी हुई है और आंखों पर चश्मा--

इसमें एक पेट्रोल पंप का कमरा--

निहा रहे दिखाइ दे रहे है।

और पास में एक घर है।

और पीछे एक बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें एक आदमी कुर्सी पर बैठा--

जा रहे दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी के हाथ में एक लिफाफा पकड़ा है।